यह एक सड़क की तस्वीर है जो फोर लाइन है।

पौधे दिखाई पर रहे हैं और सामने एक छोटा सा पहाड़ है जहाँ का रास्ता दिखाई पर रहा है और रास्ते --

एक बस सफ़ेद रंग की है | बिच में एक लाल रंग की बस है तथा उसके बगल में एक मैरून कलर की बस दिखाई दे रही है।

सजावट की गयी है और सामने उर्दू में कुछ लिखा हुआ है | अगल-बगल मे कुछ चादरे टंगी हुई है जहाँ पर लोग --